अच्छी से घेराइल हई लकड़ी से। घर हई।

लैंडर हई --

उखरि हइ पत्थल हइ आदमी हइ |

गाछी वृक्षी हई।

घंटी-उंटी ह। टेबुल ह। खिड़की ह। ई फोटो